और ये बैंक का ही दृश्य दर्शाया गया है।

क्योंकि यहां इस में यहाँ पे ए_टी_एम भी लगा हुआ है।

और उस रोड पर कार वगैरह आज आ रही है।

यहाँ एक अ एक मतलब खाली अ अ--

और बैठने के लिए चबूतरा भी कही जगा बनाए गए हैं।

और एक चबूतरे पे एक आदमी बैठा हुआ है पीले कलर का टी-शर्ट पहन के।

पार्किंग एरिया ग्राउंड लग रहा है जैसे पार्क जैसे बनाया ये ग्राउंड --

और नया नया ये जिम का हॉल है जो कि अभी डेकोरेट की--

इस चित्र में ये सूर्यास्त का समय दिखाया जा रहा है।

और इलेक्ट्रिक चार्ज मैं सभी तार इधर उधर फैले हुए हैं।

और सामने एक मतलब वो निर्माण कार्य करने वाली एक गाड़ी है एक सफेद क--

इस चित्र में एक बहुत बड़ी यहां पे प्रशासनिक भवन है यह--

बाहर से छोटा पतला रोड गया हुआ है।

वहां पे तीन दो तीन आदमी बैठे हैं और कोई खड़ा है।

दोनों साइड में और एक साइड में लेफ्ट साइड में--

यहां पे मतलब काउंटर है उस काउंटर के अंदर अ मतलब शीशे का वो काउंटर है बहुत सारे स्वीट्स मिठाइयां रखी हुई है रंग बिरंगी।

और साइड में कंटेनर है।

और उस दुकान में सफेद रंग के काउंटर है सामने एक आदमी--

और आजू-बाजू बहोत सारी बिल्डिंगे हैं और बहोत सारे ऑटो रिक्शा आ रहे हैं जा रहे हैं और साइकिल वाले मोटर साइकिल वाले भी --